एक सीढ़ी भी है जिसका रेलिंग व्हाइट और रेड कलर का है।

और साइड में दो पानी के बोतल भी रखे हुए हैं।

और खेलने के लिए दो टेबल भी रखे हुए हैं जिसका कलर ग्रीन ब्राउन और व्हाइट है।

और कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक झूला दिखाई दे रहा है जहां पर एक बच्चा झूला झूल रहा है।

और नीचे एक सड़क भी नजर आ रही है।

जिनमें से कुछ व्यक्ति के कपड़े का कलर रेड ब्लू व्हाइट है।

और एक महिला पौधों को पानी दे रही है।

जिनमे से कुछ व्यक्तियों के कपड़े का कलर पिंक वाइट ब्लैक ग्रीन और पर्पल है।

और सामने कुछ फर्नीचर भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां कुछ कुर्सियां भी लगी हुई है जिसका कलर ब्लैक है।

और ऊपर एक फैन भी लगा हुआ है।

और दीवाल पे एक पेंटिंग भी लगी हुई है।

इस दृश्य में एक सेर दिखाई दे रहा है जो कि ब्राउन कलर का है।

इस दृश्य में बहोत सारे मिट्टी दिखाई दे रही है।

और उसके सर में ऑरेंज कलर है।

और उसके आसपास बहोत सारे पौधे भी लगे हुए हैं जो की हरे रंग के हैं।

और दुकान के ऊपर कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

और बहुत सारे गाड़ियां भी नजर आ रहे हैं।